घूमने का बना हुआ है जिसमें कुछ लाइटे लगी हुए हैं। कुछ लाइटे सफ़ेद कुछ लाल हैं। एक व्यक्ति किनारे पर बैठा है। उपर चन्द्रमा निकला है। चन्द्रमा की रोशनी नीचे पानी में चमक --

एक हेलमेट लगा हुआ है। बाहर एक जनरेटर खड़ा हुआ है। एक व्यक्ति अंदर जा रहा है। बाकी गमले रखे हैं छोटे छोटे से जिनका कलर लाल और हरा है और फूल भी लगे --

बड़ी सी बिल्डिंग है। बिल्डिंग में बहुत सारे घर बने हैं। उसमें बहुत सारी खिड़कियाँ बनी है।

एक बड़ा सा चौक है। चौक के अंदर एक चौक ऊपर एक छोटी मूर्ति है मूर्ति के ऊपर एक छतरी नुमा चार खमबो पे एक छाता जैसा गुम्बद बना हुआ।